सभी बहोत ही मजे उठा रहे है और धोका चलने का बहोत ही आनंद ले रहे है।

ये कारों गाडियों की ए पार्ट्स मिलती हैं। यहाँ पर सारी गाड़ी की पुर्जें बनाई जाती है और यहाँ पर सारी चीजे उपलब्ध हो जाती हैं।

यह एक कंकाल का ढांचा है और इसपर रिसर्च की जा रही है इसे ऑपरेशन थिएटर में लिटाया गया है और इसकी कुछ जाँच पड़ताल की जा रही है।

यहाँ पर यह लड़की भारतनाट्यम का नृत्य कर रही है। यह बहोत ही अच्छे तरीके से भारतनाट्यम कर रही है।

और इनका करने का तरीका भी बोहोत ही अच्छा है।

बहोत ही स्टैंडर्ट तरीके से बाल काटी जाती है और यहाँ लोग आना बहोत ही पसंद करते है और बाल कटवाना भी --

यह एक किराने का दुकान है। यहाँ पर सभी चीजे उपलब्ध होती है। यहाँ पर पेन कॉपी बिस्कुट ।

चिप्स कुरकुरे अदि सब चीजे यहाँ पे उपलब्ध होती है। यहाँ पे पतंग भी उपलब्ध होती हैं।

यहाँ पर एक आदमी पुशअप्स मार रहा है और एक आदमी बाइसेप्स ट्राइशेप्स बना रहा है। यहाँ पर पीछे यहाँ बोहोत अच्छी जगह है।

चिवड़ा रसमलाई लड्डू बेसन के लड्डू --

यहाँ पर जीप टेम्पो सवारी लोड करने के लिए खड़े हुये हैं और यहाँ बहोत सारा और बाइक --

ये एक एक्सरसाइज करने से हमारा अ मन भी साफ रहता है और बॉडी और बदन भी तंदुरुस्त रहती --

शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। युवक हमे यह रोज सुबह करनी चाहिए। जैसे हमे हमारा मन --

यहाँ फुलों का बाजार है यह सभी तरह की फूल मिलते है गेंदे के फूल कनेर के फूल सफ़ेद फूल जैस्मिन डीजी लोटस गुलाब --

यहाँ पर एक रोड है जोकि अभी खाली है। यहाँ पर सैंडविच की दुकाने और हौंडा शोरूम है और कोटक की बैंक भी --

व्यक्ति अपना बाल कटवा रहा है वहाँ पे एक चेयर लाल रंग की है और वह व नाई बहोत अच्छी तरह से व्यक्ति के बाल काट रहा है।

ए यहाँ अ नीम के पेड़ बरगद के पेड़ नीबू के पेड़ और बहोत ही तरह के पेड़ - पौधे लगे हुए --

यहाँ बहोत ही बड़ा स्कूल है। यहाँ स्कूल में बहोत बड़ी-बड़ी पिलर है। स्कूल की अंदर अ --

बोहोत सही रखने की लिए आते हैं। यह आदमी यहीं जिम कर रहा है और इसने नीले रंग का कपड़ा पहना हुया। पीछे भी एक आदमी जिम कर ने --